ये किसी के चीज का दूकान है ।

इ जैसा कोई कोचिंग है पढाई होता है ।

ये वाइट कलर का महिला है कहूं जा रही है।

हजाम है वो लड़का के कौआ खोदे वाला बाल कटा रहा है ।